भरा हुआ है पेड़ भी दिख रहे हैं पत्थर भी दिख रहे हैं काफी पानी भरा हुआ है।

काफी अच्छा मंदिर दिख रहा है। काफी सुन्दर मंदिर है। काफी अच्छा लग रहा है। गेट- वेट लगे हुए है मूर्ति गढ़पति बनी हुई है काफी पेड़ भी अलग -बगल भी लगे हुए है गार्डन भी दिख रहा है।